और नीचे एक शॉप हैं फोर व्हीलर है स्कॉर्पियो है।

एक हिंदू मंदिल है जिसका अंदर का व्यूज़ दिया हुआ है।

पांच ब्रांड का फैन है तूफान ऊषा बूटन रजिस्ट्रोन को--

हर चीज़ इसमें से है प्रोटीन है कलर है व्हाइट सीमेंट है।

और पेड़ भी हैं कुर्सी लगा हुआ हैं बहुत सुन्दर सा--

सोफा वोफा लगा हुआ रूम के तरह है सोफा वोफा लगा हुआ है।

ऑरेंज कलर का है दो पेड़ है नारियल का और एक पीपर का है जो की एटा--

क्लासरुम है जो कि इसमें छोटा छोटा बच्चा पढ़ रहा है और--

और रंग बिरंग का कपड़ा वपड़ा है सुंदर सुंदर कपड़ा है और एक लड़के का पुतला भी हैं।